यहां पर मुझे ब्रिज दिखाई दे रहा है और यह तस्वीर भी ब्रिज के ऊपर से ही ली गई है मुझे यहां पर मुझे कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं आसमान में कई जगह बादल दिखाई दे रहे हैं और यहां पर मुझे पानी का कलर येलोविश दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है घर के बाहर यहाँ पे कुछ दुकाने दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बेकर वर्ल्ड लिखा हुआ है मतलब एक ये बेकरी है।

मुझे एक तलाब दिखाई दे रहा है तलाब में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है और तालाब में मुझे कुछ गंदगी भी दिखाई दे रही है।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

यहां पर एक और दिखाई दे रही है हॉर्ट के साइड में मुझे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक इलेक्ट्रिक का खंबा है जिस पर डीपी लगी दिखाई दे रही है यहां पर कर्मचारी भी दिखाई दे रही है।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

और यहाँ पे मुझे एक कार दिख रही है जो की ग्रे कलर की है और एक आदमी बाहर जाता हुआ दिख रहा है पीछे की तरफ दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं ।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

घर पे प्लास्टर नहीं किया गया है आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा है कोई गाड़ी भी खड़ी हुई है इसका कलर मुझे वाइट दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे मुझे एक घर भी दिखाई दे रहा है जो की ग्रे कलर का है उसके ऊपर कोई कलर नहीं किया गया हैऔर ये पलस्तर से बना हुआ हैऔर ये--